यह चित्र एक बहुत बड़ी नदी का नजर आ रहा है नदी में दो किश्तियाँ नजर आ रही हैं।

यह चित्र एक बड़े तालाब का नजर आ रहा हैजहां पर किस्तियां नजर आ रही हैं।

यहाँ चित्र एक विधालय के बाहर का नजर आ रहा हैं विधालय का दीवारों का रंग संतरी नजर आ रहा हैं विद्यालय के दीवालो के ऊपर कुछ खिड़की नज़र आ रही हैं ।